ऐसी फोटो है जिसमें सब लोग योगा कर रहे हैं और योगा करने के लिए सभी को एक-एक बिस्तर दिया गया है।

ये कुछ कोर्ट या कुछ मंदिर का फोटो दिखाई दे रहा है जिसमे पुलिस प्रशासन यहाँ पे पूरी तिंदु सुरक्षित रखने के लिए यहाँ कुछ जमावड़ा किया हुआ है और एक अच्छी बिल्डिंग मेरे सामने दिखाई दे रही है।

वो ट्रेनर एक पार्ट पर खड़े हुए हैं और उसके बाजू में एक चेयर भी मुझे दिखाई दे रही है और उसके सामने कुछ बिल्डिंग्स भी बन रही है।

ये कुछ लोग योगा करते हुए मुझे दिखायी दे रहे हैं जिसमें एक ट्रेनर है और ये ट्रेनर कुछ बच्चे हैं कुछ बुड्ढे हैं और कुछ जवान लोगो को योगायें सिखा दे रहे हैं।

यहाँं पे कुछ दो लोग मुझे चटाई बिछा के बैठे हुए नजर आ रहे हैं।